अंदर टेबल रखी है बाहर विंडो है और उसमें भी ब्लू और ऑरेंज कलर का लोगो बना है।

क्लास में दो प्लास्टिक के ड्रम रखे हैं।

जिसने व्हाइट कलर की शर्ट पहेन रखी है।

यह एक स्टेशनरी की दुकान है।

इस रूम में तीन बड़े बड़े सोफे रखे हैं सोफे एक सोफे पर वाइट कलर का तकिया रखा है।

और बहुत सारे छोटे छोटे पैकेट रखे हैं।

उसके दोनों कान ऊंचे हो रहे हैं।

वह प्लास्टिक की पनियों से कवर करे हुए हैं।

बजाज यूनिवर्सल का कुछ प्रचार का बोर्ड लगा है।

टाइल्स वाइट और ब्लु कलर के चेकस वाली लगी है।

यहां और बॉक्सेस में सामान रखा है।

जिसमे लोग नाव चला रहे हैं।

और भी अन्य छोटे छोटे लोहे के पार्ट दीवारों पर टंगे हैं साइड में एक टायर रखा है।

अन्य छोटे छोटे कचरे छोटे छोटे पत्ते के रूप में पड़े हैं।

कूलर पैक करे हुए रखे हैं कार्टून्स रखे हैं इधर साइड से --

जिसमें चार हिरन ब्लैक कलर में है बाकी सब--

यहां पर कांच के शोकेस बने हैं जिसमें कुछ सामान रखा है।

जिसने रेड कलर की सारी पहेन रखी है।

यहां पर आस पास चद्दर का शेड बना है।

एक कार साइड में रखी है जो रेड कलर की है।

जिसके ऊपर कांच का शोकेस बना हैं।

साइड में भी चेक्स वाली दीवारों पर लगा है।

यहां पत्थरों से बना झरना हैं जिस पर एक जेट्स खड़ा है जिसने ब्लू टी-शर्ट पहन रखी है।

फोटो खींच रहा है दो लेडीज हैं साइड में बैठी है।